और इस दुकान में काफी सारे ग्राहक फूल लेते हुए नजर आ रहे हैं।

और साइड में बहोत सारे सामान भी दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर दो तीन बोरे भी दिखाई दे रहे है।

और पीछे मोबाइल के कोवर भी दिखाई दे रहे हैं।

के साइड में भी एक बहोत बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा है।

ओर सामने के और ऊपर में दो तीन चार बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में तीन आदमी दिखाई दे रहा है।

राजेश और उसके बाद मोबाइल नंबर भी लिखा गया है।

और दुकान के अंदर में कई सारे कुरकुरे शैंपू वगैरा समान भी दिख रहा है।

और साइड में एक शेर का मूरत दिखाई दे रहा है।

यह एक कोई शायद गार्डन है और यहां पे एक अच्छा सा घर भी है।

घर के साइड में एक आदमी खड़ा है।

यह एक कोई बड़ा सा मछली का दुकान है।

धुंधले के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा है।

इस दुकान में तीन चार शीशे नज़र आ रहे हैं।

नीचे कुढ़ में भी कुछ कुछ रखा गया है।

और इस पाइप से बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी फेक रहा है।

यह एक बड़ा सा स्कूल लग रहा है।

और इस दुकान में टी_वी के अलावा और भी कई सारे चीज रखे गए हैं।

यह एक कोई शायद मंदिर है।

कूल के बाहर में एक बड़ा सा गेट भी है।

और सामने केवल एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही है।

और मंदिर के सामने नीचे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और एक बल है और काफी सारे पर्दे है। नीचे मे सोने के लिए बस्तर भी है।

और नीचे बिस्तर में तकिए भी हैं चादर भी हैं।

और इस दुकान के ऊपर में दो बल्ब दिखाई दे रहा है।

और इस हॉस्पिटल के साइड में एकली चीज लिखा गया है।

कॉविड उन्नीस टीकाकरण केंद्र लिखा गया है।

जोकि सामने के ओर एक आदमी बॉडी बना रहा है।